पीछे में एक व्हाइट कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा है।

जिनमें एक लाइक भी दिखाई दे रहा है।

एक दो टेबल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

पीछे मे बहोत सारा दुकान दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा चेयर भी है।

एक साइड बैग भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग को ऊपर में बहोत सारा लोहा दिखाई दे रहा है।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

और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक फील्ड दिखाई दे रहा है।

पीछे में तीन घर दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक कार दिखाई दे रहा है।

इधर बहुत सारा मैगी भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक पानी बोतल भी दिखाई दे रहा है।

और एक साइकिल रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे में कारपेट भी दिखाई दे रहा है।

आगे में एक रस्ता भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा फूल माला भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा किताब भी दिखाई दे रहा है।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

दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

घर के पीछे में एक टावर भी दिखाई दे रहा है।

घर के बाहर में बहुत सारा आदमी है।

रेड कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

ब्रिज के नीचे में पानी दिखाई दे रहा है।

एक ओवर ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में दो टेबल है।

एक लैम्प भी दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

में एक पानी बोतल भी दिखाई दे रहा है।

यह एक वायर भी है।

फिर एक टीना घर भी दिखाई दे रहा है।

एक मोटर भी दिखाई दे रहा हैं।